एक वृक्ष का भी दिखाई पड़ रहा है। आसमान नीले दिखाई पड़ रहे हैं।

और हरे कलर का एंगल और बंबू रंगा हुआ है।

के अंदर बहुत से डेकोरेट किया हुआ है बहुत से काउंटर बने हुए हैं बहुत से आदमी खड़े भी हैं।

यह एक कोई रोड का फोटो है। रोड के किनारे दोनों सीमेंट से रेलिंग दिया हुआ है।

कांच भी रखे हुए हैं और एक गोदरेज रखा हुआ है उसमें ताला लटका हुआ है।

सामने में एक सिंहासन है सिंहासन में कोई देवी देवता का फोटो है सिंहासन पर लाल जैसा पत्ता सटा हुआ है।

यह एक कोई मकान के अंदर का फोटो है मकान के अंदर में बहुत से कुर्सी लगे हुए हैं।

और तालाब के अंदर एक नाव भी है नाव के ऊपर मे दो लडका दिखाई पड रहा है उस वो दोनो हाथ निकाला हुआ है।

एक झूला भी है झूले में पौधे लगे हुए हैं और हरी हरी घास है एक पोल भी खड़ा है जिसमें लाइट लगे हुए हैं।

बहुत से बड़े बड़े लाइट लगे हुए हैं छोटे छोटे भी लाइट है।

एक बोर्ड लिखा हुआ है उसमें द बर्गर कंपनी लिखा हुआ उसके बगल में भी लेट्स प्ले लिखा हुआ है उसके ऊपर में एक ए_सी लगा हुआ है बहुत से कुर्सी लगे हुए हैं काले कलर की भी कुर्सी हैं।

अंदर मे सीसी के सामान रखे हुए हैं।

ए_टी_एम दिखाई पड़ रहा है बगल में एक लाल जैसा बोर्ड भी है।

गली में बहुत से पेड़ पौधे लगे हुए हैं गमले में भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

बाहर में रोड पे बहुत से आदमी है उसके बगल में एक दुकान है जो सटर गिरा हुआ है काउंटर बंद है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल का फोटो है सामने में एक गली है इसमें काले जैसा टाइल्स लगे हुए हैं बहुत से लाइट जले हुए हैं।

बैजनाथ सेवा सदन लिखा हुआ है दरवाजा बंद है लोहा का गेट लगा हुआ है।

बहुत से जालीदार खिड़की लगे हुए हैं उसमें शीशे लगे हुए हैं।

यह कोई बहुत बड़ा हॉल का फोटो है हाल में बहुत बड़े दरवाजे हैं जो सादे कलर के दिखाए हैं।

अ बहुत ही गेट पे एक देवी देवता का सिंहासन दिख रहा है।

पीने वाला रखे हुए हैं दिखने में अच्छा लगता है फ्रिज में--

और गेट के सामने में बहुत से कुर्सी रखा हुआ है उसे पे--

वो चार आदमी दिखाई पड़ रहे हैं बैठे हुए हैं।